यहां पे और भी लड़कियों के सामान रखे हुए हैं पीछे घर दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमे खेत दिखाई दे रहे है खेतों को बीच बीच से काटा गया है और इसमें पानी भरा गया है । बीच में पाहाड़ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हे। टापू दिखाई दे रहे हैं। टापू के उपर पेड़ लगे हुए हैं। यहा पे हामे कुछ बहोत सारा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा --

यहाँ हमें बगीचा दिखाया गया है जो कि हरे उम पेड़ पौधे से लगा हुआ है। नीचे हमें कुछ खास कुछ भि दिखाइ--

आदमी है जो की साइकिल से जा रहा है एक आदमी है जो की बाइक से जा रहा है। यहां हमें एक ऑटो दिखाई देरहा है।

कलर का टी-शर्ट पहना हुआ हे इसने मूह ढाका हुआ हे। इसके सामने हम देख सकते हे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा हे अगल बगल बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हे।